ये एक शादी का मंडप है इसको सजाने के लिए दो आदमी लगे हुए है एक सीढ़ी भी है जिससे की फूल एंट्रेंस के ऊपर --

इस बस स्टॉप में टॉयलेट्स है जो कि लेडीज और जैंट्स के लिए अलग-अलग है।

इस चित्र में आप देख सकते हैं। ट्रॅकर ट्रैक्टर देख सकते हैं। ट्रैक्टर तारा हरबजंस की है।